अगल-बगल पेड़-पौधे हरी-भरी पत्तिया सफेद और नीले रंग के आसमान है ऊपर की साइड से तार गया हुआ काले रंग की और सफ़ेद रंग की।

सामने एक शो पीस ट्रेन खड़ा हुआ है जो काले रंग का है एक पोस्टर लगी हुई है एक पेड़ लगा हुआ है हरे रंग की पत्तीया हैं नीले रंग की आसमान है नीचे एक साइड पे कुछ भूरे रंग के हरे रंग के घास है एक खम्बा गड़ा हुआ हैं।

हरे रंग की घास हैं सामने बड़ा सा बिल्डिंग हैं जो सफेद रंग की बिल्डिंग हैं एक बड़ा सा खिड़की हैं एक छोटा सा रोशनदा--

पे एक लेडी कुर्सी पे बैठी हुई की बुजुर्ग आदमी बैठे हुए है जो काली काली हाथ पे लिए एक सामने मशीन म रखी गई हैं।

सैलोन कुद ये सैलून की दुकान है जो एक लड़का बैठा हुआ है जो उसके बाल पे चिमटी लगाई गई है पीछे साइड पे एक आदमी खड़ा है जो --

और कुछ खंबे गड़े हुए हैं जिसपे चारो तरफ लाइट लगाई गई हैं पार्किंग हैं जो बहुत सारी कार खड़ी की गयी सफ़ेद और नीले रंग की आसमान हैं एक रिक्शा खड़ी हैं सामने से एक औरत हैं एक लेडी जा रही हैं।

एक पुलिस वाला खड़ा है जो मास्क लगाए हुए है भूरे रंग का कपड़ा पहना हुआ है और बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं जो मास्क लगाए हुए हैं सामने से एक कार वाला जा रहा है जो सफेद रंग की कार हैं सफेद और नीले रंग की आसमान--

ऊपर एक लड़का जो डांस कर रहा है सामने हाथ किये हुए एक हाथ नीचे की हुई है।

एक लड़का जो मशीन बना रहा है जो नीले रंग की टोपी और नीले रंग का चड्डा पहना हुआ है बहुत सारे टूल्स रखे गए हैं कुछ नट बोल्ट रखे गए हैं पीछे एक साइड पर गाड़ी का पार्ट्स रखा गया है।

पीछे साइड पे पेड़ लगी हुई जो हरी रंग की पत्ती सफेद और नीले रंग की आसमान हैंकुछ साईकिल खड़े हुए हैं बगल में एक गाड़ी खड़ी हुई है।